यहाँ पे एक माठ‌ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक स्टेच्यू दिख रहा है।

बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं।

इस तस्वीर में एक रूम नजर आ रहे हैं।

यहां बहुत सारा दरवाजा भी है।

यहां पे कोलगेट नजर आ रहा है।

घर के अंदर एक बाईक नजर आ रहा है।

यहां पे एक पेट्रोल पंप नजर आ रहा है।